दो आदमी खड़े हुए हैं।

पेड़ दिखाई दे रहे --

कुछ कुर्सियां डली--

उसमें एक व्यक्ति खड़ा।

लंदन डेयरी लैब --

उसके पीछे एक गुंबद बना हुआ--

उसमें कुछ समान रखा--

स्कूटी एक लड़की चला रही--

सामने एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा--

उसमें कुछ केबिन बने हुए --

सामने एक मकान दिखाई दे रहा है।

कुछ बुलेट मोटरसाइकिल

सामने एक मकान दिखाई दे रहा--

बिल्डिंग दिखाई दे रही--

दिखाई दे रही है जिसका रंग--